यह एक मॉल की है फोटो है जो के खाली है। एक एस्कलेटर ऊपर जा रहा है और एस्कलेटर नीचे आ रहा है।

बलून के ऊपर खड़ा कर के एक जिम का पोज कर रहा है और नीचे जिम के इक्विपमेंट भी पड़े हुए है।

पार्क का सीन है जिसमें लोग योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दो व्यक्ति स्टूल पे बैठे हुए हैं।